यहाँ पास बैठने वाले बच्चे आसानी से ब्लैक बोर्ड या वाईट बोर्ड को देख सके और क्लास --

और इसे बर्फ में रखा गया है शायद बर्फ में इसलिए रखा गया है ताकि मछलियां खराब ना हो।

मोबाइल रिचार्ज मोबाइल पेमेंट डीटीएस रिचार्ज --

जो बाइक की शोरूम है यहाँ पास बहुत सारे --

और कुछ नॉन- वेजीटेरियन --

ऐसा लग रहा है ये कोई इमारत है जहाँ पस किस--

इसी में लोग रनिंग करते हैं किसी से अपनी बॉडी बनाता हैं कोई हाइट बढ़ाता है।

ऐसे में लोग रनिंग करते है ऐसी बॉडी बनाते हुए हाइट बढ़ता है।

और यहाँ पे सारी चीजों को बहुत सिस्ट्मेटिक तरीके से रखा --

अअ मिक्सअप दुकान हैं ।